यह स्टैचू एक भीमराव अंबेडकर की है जिसे बुद्धा स्टैचू कहा जाता है यह एक पार्क में लगी हुई है और यह पूरी गोल्डन कलर की है और यह बहुत बड़ी है।

ह्यूमन के ब्लड पे और बहुत सारी चीजों पर रिसर्च कर कर अड्वान्स टेक्नॉलजी बनाता हैं।

दाल चावल नमक सब कुछ यहाँ पे मिलता हैं यह राशन की दुकान हैं यहाँ पे लोग आकर अपने-अपने लिए सामान खरीदते हैं।